हेलो गाइस जैसे की आप देख रहे हैयहाँ पे स्लीपर बस स्लीपर बस के ऊपर बहुत बॉयज चघे हुवे है पुलिस वाला भी है दो पुलिस वाले है सब बेग टांग के काम करने जा रहे हैं।

हेलो गाइस जैसा की आप देख रहे है दो चार ऑक्सीजन है एक बॉयस है डॉक्टर है मास्क लगाया हुवा है परदा है निचे टाइल्स मार्बल काउंटर है बहुत अच्छा है दरवाजा भी है।